slides हैण्डआउट्स notes और outline
यहाँ हम उबंटु लिनक्स वर्जन 1004 और लिबरऑफिस वर्जन 334 का उपयोग कर रहे हैं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
color में gray scale चुनते हैं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
यह पेज का एक छोटा प्रीव्यू है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
यह पेज को अधिक आकर्षक बनाता है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
अब print button पर click करें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
अब print button पर click करें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
tab libreoffice impress टैब पर click करें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
tab libreoffice impress टैब पर click करें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
slides हैण्डआउट्स notes और outline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
हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद